इस चित्र में मुझे एक बहुत अच्छा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

एरोप्लेन दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में मुझे एक ढाबा दिखाई दे रहा है।

और वहां पर रखी बहुत सारी पेप्सी की बोतल नजर आ रही है।

इस चित्र में मुझे बहुत सारी लड़की दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में मुझे बहुत सारी चट्टाने दिखाई दे रही हैं।

एक बहुत बड़े खेत में खड़ा है।

इस चित्र में मुझे एक स्टोर दिखाई दे रहा है।

और वहां पर खड़ा एक आदमी दिखाई दे रहा--

वहां पर लिफ्ट भी है।

ऑफिस दिखाई दे रहा है।

एक नाव दिखाई दे रही है ।

लोग दिखाई दे रहे हैं।